यह तस्वीर से आपको मैं परिचित करते हुए यह बताना चाहता हूँ इस तस्वीर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर हम बहुत सारी बालिकाएं और एक वालिका --

के समय एक सीमेंट अपनी मैं बैटर तैयार कर देता है जो की सीमेंट तैयार कर--

यह तस्वीर एक स्टेज के ऊपर लड़कियों के डांस प्रस्तुत करते हुए ली गयी है इस तस्वीर में सभी बालिकाए स्टेज -

में है ये लड़किया सभी एक ग्रुप डांस कर रही है यहाँ पर बहुत सारे लड़की देखो यहाँ आठ दस सात आठ पंद्रह बीस लड़कियां खड़ी हुई हैं डांस कर रही हैं।

इन्है इंसानो के द्वारा हाथों से बनाई गई।